और नीचे में बहोत ज्यादा बाइक लोग पार्किंग किया हुआ है।

चार आदमी दिखाई दे रहे।

इसमें बहुत ज्यादा टेबल दिखाई दे रहे।

ये एक जगह दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा कपड़ा हैंगर में लगाके रखा हुआ है और नीचे में लोग भी दिखाई दे रहा है।

और एक सीढ़ी भी जाते हुए दिखाई दे रहा और बहोत ज्यादा घर दिखाई दे रहा है।

और बहोत जादा अलग अलग रूम दुकान लोग है।

वो जो ब्लू कलर से पेंटिंग किया हुआ है।

बहुत ज्यादा ऐसी दिखाई दे रहा है और एक अंदर जाने वाला गेट है।

और सामने में छोटा सा एक टीना दुकान दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर जो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा वाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है नीचे में वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

व्हाइट और येलो कलर से पेंटिंग किया हुआ है।